इस चित्र में बड़ा सा मशीन दिखाई दे रहा हैं यह काले कलर में दिखाई दे रहे हैं ऊपर ये पेड़ा हैं पेड़ा नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है वहां बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है सीदिया दिखाई दे रहे है नीला आसमान दिखाई दे रहा है वो देखने में बहुत सूंदर लग रहा है छोटे-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में स्कूल दिखाई दे रहा है वहां पर दो-तीन पोस्टर लगे हुए हैं एक आदमी मार्क्स दिखाई दे रहा है एक आदमी अपनी दिखाई दे रहा है एक सैनिटाइजर दिखाई दे रहा है वहां--

ये उ खिड़कियां दिखाई दे रही है यह नीला आसमान दिखाई दे रहा है यह दर दिखाई दे रहे है एक--

यह म्यूजियम पीस मेमोरियल हॉल दिखाई दे रहा है पैर पौधा दिखा रहे एक नीला आसमान है।

दो आदमी बैठे हुए एक आदमी बहुत खूबसूरत लग रहे है और एक आदमी मास्क पेहनते हुए नजर--

यह बहुत बड़ा है घर इसके घर में खिड़कियां बहुत सारे दिखाई दे रही है देखने में बहुत सूंदर है।

एक ए_सी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे रूम दिखाई दे रहे है यह देखने में नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा है|